यहाँ पे एक खेत है और खेत के बाहर बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं दूर दूर तक।

यहाँ पे बहोत सारे भगवानों की मूर्तियां है बड़ी-बड़ी और यहाँ पे घंटी लगी हुई है उ --

के शहीद अशफाकउल्लाह खां स्टेडियम ये पूरा एक स्टेडियम है और इसके थोड़ा से दूरी में बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है।

दूर तक बड़े-बड़े पेड़ है और यहाँ पे पूरे स्टील‌ की शीट्स लगी हुई है घर के ऊपर।

पिक्चर में हमे चेयर दिख रही है स्टूल्स दिख रहे है लैपटॉप है सामने बोडिंग लगी हुई है।

ये पूरा एक एयरपोर्ट पिक्चर है जहां पे एक एयरोप्लेन वो है स्टॉप बोर्ड्स लगे हुए हैं बहुत बड़े-बड़े पोल्स लगे हुए हैं दूर-दूर तक छोटे-छोटे घर हैं।

छोटे-छोटे घर दिख रहे है और यहां चलने के लिए पाथ भी बना हुआ है और यहां पर हमें छोटे-छोटे पे पोल्स दिख रहे है लाइट्स के लिए --

ये एक यहां पे शाॅप दिख रही है जो की श्री ऊपर में लिखा हुआ है श्री लक्ष्मी लाॅण्डी् ‌ और ग्रीन कलर के कुछ बना हुआ है।

उसके बगल में एक घर बना हुआ है घर के आगे एक बहुत बड़ा हरा पेड़ है कार के लेफ्ट साइड बहुत बड़ा सा हमें खेत या मैदान दिखाई दे रहा है जो की ब्यूटीफूल लग --

इ इमेज इस इमेज में हमे पानी दिख रहा है और पानी की टंकी दिख रही है घर दिख रहे है उधर रॉड्स दिख रही है खंभे दिख रहे है बिजली के बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे घर के अगल-बगल।

बीच में यहाँ पे पानी भी है जिसके अगल-बगल पूरा जंगल है बड़े-बड़े पेड़ है बोरिया रखी हुई है।